ये एक स्कूल है। यहां पर एक बस खड़ी हुई है। यहां पर छोटे बड़े सुंदर-सुंदर पेड़-पौधे हैं।

यहां एक वाइट कलर का टेबल है।